छत पर एक बड़ी पीले रंग की लाइट लगी दिखाई दे रही है कमरे दिखाई दे रहे हैं उनके दरवाजे दिखाई दे रहे हैं और --

पीपल के नीचे एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है पेड़ के ऊपर तीन छो लड़के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

आगे कुछ छोटे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

लाइट लगी दिखाई दे रही है छत पे एक पंखा लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है एक पानी का कैन रखा दिखाई दे रहा --

कुछ का बहुत सारी फाइलें रखी हुई दिखाई दे रही है कुछ डब्बे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं एक सोफा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

तीन लोग कुर्सियों पे टेबल के आस पास बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे बैलून लगे हुए दिखाई दे रहे हैं खिड़कियां लगी दिखाई दें रही पर्दे लगे हुए हैं दीवार पर कुछ --

यह एक जिम है जिम में एक लड़का--

बहुत सारी लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही हैं टेबल पे एक गिलास रखा हुआ दिखाई दे रहा है पास में कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहें --

कुछ लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं बाईकें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं आसमान सफेद दिखाई दे रहा है।